ये तीनों दुकान में शटर लगी हुई है जोकि अभी बंद है।

यह एक बोहोत बड़ी फील्ड है जहां नीचे हरी हरि घासे जमी हुई है।

चारों तरफ बहोत ही खूबसूरत हरियाली छायी हुईं--

और चारों तरफ पेड़ पौधे छाये हुए है।

यह एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जो कि फील्ड है।